कुछ पैकेट है किताबें हैं रजिस्टर है विक्स है तेल की बोतलें है।

और पूरा का पूरा सामान लोहे का है और कुछ--